यहां पर एक मोटरसाइकिल की दुकान है।

यहां पर घर पिंक कलर का है यहां पर एक घर सफेद रंग का है।

यहां पर एक नीला ड्रम दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई है।